टिका केंद्र है जहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं साथ में एक महिला डॉक्टर भी बैठी है पीछे टीकाकरण के चार्ट लगे हुए हैं।

समय-समय पर महिलाएं आकर अपने बच्चो का टीकाकरण करवा सके दो टेबल लगाकर उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछाया सैनिटाइजर रखा हुआ है।

कैंची के नीचे लिखा हुआ है हेयर पॉइंट और साथ-साथ में उसको पंख भी दिया गया है और कैंची के ऊपर वाले हिस्से पे ली --